इसमें कई प्रकार के लरी बत्ती और अच्छे से सजाया गया--

यह एक कोई बैंक है बैंक के सामने कई लोग हैं।

यह एक नल भी इस रूम में--

तार खींचे गए हैं जो रेल चलती है।

इसमें लाइट बत्तियां भी जल रही--

यहां पे शाम का समय है पानी दिख रहा--

यहां पे एक चश्मा भी रखा गया है।